यहाँ दुकान की फोटो की दुकान है। यहाँ पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर बहोत साड़ी चीजें मिलती हैं।